छड़-बड़ सा लगा हुआ है लाइट लगी हुई है।

और लाईट लगी हुई है और एक दरवाजा दिखाई दे रहा है सोफा रखा हुआ है जहाँ पर गमले रखें हुए हैं।

यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई हैं पत्थर की दीवार बनी हुई हैं वहाँ पे एक दरवाजा नजर आ रहा है इधर बगल में एक--

यहाँ पर हमें दीवाल नजर आ रहा है जो पत्थर से बना हुआ है और पेड़-पोधे --